इस तस्वीर में एक चम्च देखा जा सकता है।

एक दरवाजे पर क्लासरूम लिखा हुआ है दरवाजा सफेद रंग का है।

बिल्डिंग के बाहर सुनहरे रंग का मूर्ति रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक घर दिख रहा है।

ब्लू रंग का पेन देखा जा सकता हैं।

नीले रंग का सोनी का पोस्टर देखा जा सकता है।